यह एक बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर ट्रायंगल में ट्रायंगल टाइप में रोड बना है और उसके बीच में भी पेड़ लगे हुए हैं।

दही और मट्ठा भी मिलता है। यहाँ का दूध काफी अच्छा होता है। इस दुकान के सामने बहोत सारी भीड़ भी लगी हुई है। यह बहोत ही अच्छी दुकान है।

यह एक मंदिर है इस मंदिर की सीढ़ियां बोहोत ही लंबी हैं। इस मंदिर का कलर --